और यहां कुछ बोर्ड लगाए गए हैं।

और यहाँ सामने कांच का दरवाज़ा--

और सामने कुछ सामान रखा हुआ है।

और यह औरत कुछ काम कर रही हैं सामने एक बेंच लगाया गया है।

और सामने कांच लगाए गए हैं।

बेड के ऊपर एक आदमी सोया हुआ हैं।

यह एक क्लास रूम हैं और यहां पर कुछ बच्चे बैठे हुएं हैं।

और सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं।

और यहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और सामने कुछ बेंच लगाए गए हैं।